इस फोटो में सामने एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है।

पीछे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जिनके पास कुछ पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

सामने एक जो बालू का ढेर लगा हुआ है पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस फोटो में सामने एक बड़ी सरिओ की दुकान दिखाई दे रही है उसमें बड़े बड़े लोहे के पाइप --

इस फोटो में एक खिलौने की बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

जो कि गुलाबी रंग का है। सामने कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

और कुछ मेज पे पड़े हुए औजार दिख रहे हैं जिसमें कुछ ग्लास पड़ा हुआ है।

इस पर अलग अलग रंग के पायदान रखे हुए है।

गाड़ी का चित्र दिखाया गया है और कुछ औजार रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने वर्दी पेहनी हुई है।

जोकि हैंगरो पे टंगे हुए कपड़े दिख रहे हैं।

इसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है और नीचे की तरफ दो बाइक खड़ी हुई हैं जिनके पास एक साइकिल खड़ी है।

और सामने खड़ी हुई कुछ बाईकें दिखाई दे रही हैं जिनके पास कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

जो कि सामने कुछ चेक रंग की है सामने एक खिड़की दिख रही है उसके पास में ही --

अलमारी रखी हुई है और एक डेस्क पर मॉनिटर रखा हुआ है।

कुछ बच्चे कुछ बच्चों के ऊपर चढ़े हुए हैं।

फोटो में सामने एक अस्पताल का फोटो दिखाया गया है।

फिर एक सफेद रंग का दरवाजा दिख रहा है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा कंट्रो का स्टोर दिखाया गया है।

सामने ये दो आदमी दिख रहे हैं जिनके मुंह छुपाए रह गए हैं।

जोकि सामने की तरफ खड़ी हुई है और कुछ साइकिल लोहे की बेंच पर खड़ी हुई है।

जिनके ऊपर एक डिब्बा और रखा हुआ है नीचे एक लड़का बैठा हुआ है जोकि अपनी दुकान में बैठा हुआ है।

सामने कुछ बिल्डिंगे दिख रही है और एक घाट दिख रहा है जिसके पास में एक पेड़ खड़ा हुआ है।

ये एक सोफे पर पड़े हुए हैं कुछ शॉल पैकिंग के अंदर है।

इस पर डॉक्टर एस_एन देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बस दिखाई दे रही है।

इसमें सामने कुछ बांदा चल रहा है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा कार का शोरूम दिखाई दे रहा है।